काफी बड़ा पीपल का पेड़ है।

लाइटे लगी हुई है। ये एक होटल लग रहा है।

सामने एक जिम का फोटो है।

इस फोटो में एक गार्डन है।

एक आदमी गंजा हो के बाहर खड़ा है।

काफी बड़ा दरवाजा है और यहां बहोत बड़ा स्कूल है बड़ा सा दरवाजा है।

इस फोटो में एक व्यक्ति अपना सेल्फी ले रहा है सामने बड़ा बड़ा मिरर लगा है।

बहोत बड़े झरने के फोटो है।

इस फोटो में एक बड़ा सा ट्रक है इस टेंपो के अंदर बड़ा बड़ा म्यूजिक सिस्टम है।

काफी सुंदर सुंदर झूले हैं जिसमें फ्लाई करते हैं।

यहां बहोत बड़ा आसमान है और पेड़ पौधे हैं मिट्टी भी है।

इस फोटो में ढासा का बस सटेंड हैं।

ये टायर का बड़ा सा फैक्ट्री है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा घर है इस घर में हरे और सफेद रंग का पेंट है।